बहुत अच्छा है सुन्दर है यहाँ लाइट है बहुत अच्छा खिड़की है दरवाजा है और आदमी है रोड है बोहत अच्छा पेड़ पौधे है।

आदमी और बाइक है मोटरसाइकिल है और पेड़-पौधे है औ और बहुत सारा पेड़-पौधे नित अच्छे बहुत अच्छे है।

कटिंग रूम हउ पिक्चर है सुंदर हैं ।

यह मूर्ति सुन्दर है और पुजा करने आ रहे है बहोत अच्छा सुन्दर है।

और सजाया हुआ है लाइट है सफ़ेद रंग का मंदिर है बहुत अच्छा सुन्दर है ।

तस्वीर में बहुत अच्छा सुन्दर है और और उधर तालाब भी है बहुत अच्छा सुन्दर है पेड़-पौधे है बहुत अच्छे है है।

प्रेसिडेंट का घर है बहुत अच्छे सुन्दर है और खिड़की दरवाजे है बहुत अच्छे सुन्दर है और --]

और दरवाज़े है बहुत अच्छे सुन्दर है और स्कूल है और मजार है बहुत अच्छा सन्दर है और खिड़की दरवाजे है।